यहां एक रामकृष्ण केयर का बोर्ड हुआ है आगे मोट अं कार खड़ी हुई है एक रेड अं मैरून कलर की व्हाइट कलर की आदमी भी खड़े हुए हैं।

र कुछ कपड़े हैं एक टॉवेल भी हैं।

ये एक चर्च है यहां पर एक बैलून से बैलून से सज रहा है।

ये एक इंडियन ऑयल है यानि पेट्रोल पंप है और यहां पर--

और एक स्कूटी भी है एक साइकिल खड़ी हुई है।

एक रोड है रोड पर एक ऑटो वाला है और एक मोटरसाइकिल पर आदमी बैठा हुआ जिसने कैप लगा रखी है।

और एक कार खड़ी है सामने एक ठेला खड़ा है इस पर नारियल पानी का गोला रखा हुआ है एक टंकी भी दिखाई दे रही है।

दुकानें यहाँ प कुछ आदमी बैठे अ कुछ आदमी एक आदमी --

काफी सारा सामान रखा है बैट बॉल वर ये सारा कुछ यहां--

ये फूलों की दुकान है यहाँ पर फूल माला टंग रही है एक आदमी दो आदमी बैठे हुए है अलग-अलग दो दुकानें है।

ये एक रेस्टुरेंट है रेस्टुरेंट में टेबल है और--

और उम्म बस के ऊपर गेंदे के फूल की माला लगा रखी हैं।

और एक प्लास्टिक की डलिया उसमें कुछ आलू रखें एक थैली में भी कुछ मिर्च है एक आदमी--

जैसे करेला तोरहीं गाजर गोभी और तराज़ू भी है एक पीछे की तरफ ठेला है।

पट्टी के डिब्बे रखो हु एक शीशा भी लगा हुआ है य--